इसमें बहुत सारा कुर्सी रखा हुआ है।

बाल्टे में पौधा लगाया हुआ है।

सूर्य का परकाश दिखाई दे रहा है।

इसमें पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।

दीवाल का कलर सफेद और पीला है।

बहुत सारा लाइट जल रहा है।

और लाइट जल रहे है।

काला रंग का टाइल्स दिखाई दे रहा है।

यह एक होटल का दृश्य है।

बहोत सारे हुआ है पीस का कलर लाल है।

लड्डू रखा हुआ है मोतीचूर का।

पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

और ब्लू रंग का गेट लगाया हुआ है।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

और एक बड़ा सा थाल में छोला रखा हुआ है बहोत सारा।

एक सालटीन के पलेट पे टमाटर कटा हुआ है।

बहुत सारा लाइटें जल रहा है।

बहुत सारा टेबल दिख रहा है।

पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है नीले रंग का आकाश है।

दो व्यक्ति खड़े हैं नाव पे।

पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है नीले रंग का आकाश है।

ऑटो चल रहा हैं और उसमें बहुत सारे व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।

लाइट जल रहे हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।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

नीले रंग का आकाश है।

यह एक दुकान का दृश्य है दिवाल का कलर सफेद है।

कुर्सी दिखाई दे रहा है।

गमला में पौधा दिखाई दे रहा है।

बैग दिखाई दे रहा है।

यह एक होटल का दृश्य है।

पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है नीले रंग का आकाश है ।

ढेर सारे कुर्सी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा बैलून दिखाई दे रहा है।

यह एक सड़क का दृश्य है।